वहां पर कुछ गाडिया भी है।

रिलायन्स डिजिटल भी है|

वहां पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए है।

यह एक चर्च है यहाँ पर --

यह एक चर्च है यहाँ पर --

जिसके पास एक आदमी बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है और दूसरा वंहा से कपडे लेके वहां से जा रहा है।

यंहा पर एक मंदिर नजर आ रहा है और उसके दोनों तरफ सीढ़िया है मंदिर के अंदर जाने के लिए और वहा पर बहोत सारी आजु बाजु पेंटिग्स बनाई हुई है।

यहां एक लड़की पार्लर में बैठी हुई है।

यहा पर कुछ घर नजर आ रहे है वहा पर एक ऑटो रिक्शा भी नजर आ रही है और उसके आगे एक गाडी भी खड़ी हुई है।

और वहा पर पानी की टंकी भी नजर आ रही है।

और छोटे छोटे भी बोट्स है।

और बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

भगवान की मूर्ति है और उसके सामने दिये लगे हुए है।

चालु हैं वंहा पे ईट सलिया वगैरे रखी हुइ है और उससे घर बना रहे है और वंहा पर एक आदमी भी खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट ब्लू कलर की पैंट पहनी हुइ है।